ऊपर की तरफ गोड का आइकन हमे देखने को मिल रहा है।

यह फोटो नाईट मे ली हुई लग रही है बाहर एक गेट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक आदमी भी हमें दिखाई दे रहा है।

पानी में बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं सामने तरफ एक नाव और बहुत सारे घर हमे दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो हमे बहुत ही खाली एरिया की दिखाई दे रही है जिसमे के ट्रक और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह फ़ोटो एक पक्षी कि हमे लग रही है जो की अपने मुह को टेढ़ा करके बैठा हुआ है।